छोटे से छोटे पेड़ लग रहे है हरी दूबा है और यहाँ पर कोई नहीं है।

घर के बहार एक पेड़ लगा हुआ है। दो बाइक खड़ी --

चॉकलेट्स रखी हुईं हैं। सेंटाक्लोज़ रखें हुए हैं। अंडे रहें हुए हैं। सोनपापड़ी रखी हुई हैं।

ये एक माला हैं। ये एक मोगरी --